जिसमें दीवारों पर बाइक की तस्वीर बनी हुई है लाइटें चस रही हैं टेबल लगी हुई हैं कुर्सियां लगी हुई हैं।

अलमारी में अलग अलग खाने बने हैं जिनमे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कपड़ों का रंग पीला हरा नीला --

यहां पर एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसमें दो ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारी टेबल व कुर्सियां लगी हुई है कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं पास में एक कूलर लगा हुआ है दुकान में कुछ व्यक्ति खाना बना रहे हैं कुछ बैठे हुए हैं।

जिम में सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में कुछ मकान के कुछ दीवारें बनाई जा रही है मकान बनाए जा रहे हैं मजदूर लगे हुए दिखाई दे रहें --

सामने पंखे लगे हुए है ट्यूबलाइट्स लगी हुई है दीवार पर ए_सी लगी हुई है कुछ बुजुर्ग इधर उधर घूम रहे है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं साइड में एक रोड दिखाई दे रही है खंभा दिखाई दे रहा है ये मंदिर काफी अच्छा है।